दो आदमी ड्रम पकड़ के--

यह एक ट्रेन स्टेशन है।

और एक ट्रक येलो कलर का भी है।

ग्रीन कलर का एक ट्रेन दिखाई दे रहा है।

लाइट और पानी लगाया गया है।

और इसमें टेबल और एक भी रखा गया है।

ये एक बच्चे का दुकान है।

लेन का अंदर में ब्लैक कलर का सोफा रखा गया है।